वहां पर कोई नहीं दिख रहा है पीछे एक बहोत बड़ा हॉल दिख रहा है।

कुछ सूर्य की किरणे पहाड़ पर पड रही है जो गोल्डन रंग से चमक रही है नीला आकाश दिख रहा है।

इस मे लक्ष्मी जी की फोटो दिख रही है और स्टैशनेरी का भी सामान बहुत सारा दिख रहा हैं लाल कलर की डायरी बहुत ज्यादा मात्रा में दिख --

यहां पर एक बहोत बड़ा जलाशय दिख रहा हैं जिसमें सूर्य की किरने पड़ रही हैं ऐसा लग रहा है की यह दोपहर की किरने है।